सब दूकान अभी बंद है ।

देखिए एक लाइन से दिखने मे बहुत बढियाँ लग --

कितना बढ़िया-बढ़िया पेड़ है लगा हुआ है।

को पढ़वे यार --

देखिए कितना मस्त काम कर रही है ।

बहुत भयंकर लग रहा है ये फील्ड छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा है |

पेट्रोल पंप में भी बहुत अच्छा चीज़ होता है बहुत बढियाँ चीज़ होता है।

ओह माई गॉड ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।

ये तो लग रहा है की ये गेट नहीं है समझिये न की मतलब --

ये ए.टी.एम. मे लाइन लगे है ।

इतना अच्छा सोफा है की मत पूछिए बहोत भयंकर सोफा है।

इतना बढ़ियां है नारियल-उरियाल सब चीज़ हैबहुत सारा फ्रूट है | ये सब खाने से शरीर में पुस्टी --

पुलिस अंकल सब कोई देख रहे है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है भीड़-भाड़ तो हमको बिल्कुल पसंदे है ।

यह अंगूर खाने में इतना अच्छा लगेगा इतना अच्छा लगेगा की आप सोच भी नहीं सकते है कि ये अंगूर कितना अच्छा है।

इतना मस्त लगता है की मत पूछिए हम खा के देखे हैं बहुत बढ़ियां चीज़ है ये अंगू --

इतना अच्छा बाउंड्री दिख रहा है की मत पूछिए कलर भी बहोत बढियाँ है इसका भयंकर लग रहा है।

ऊपर है पौधा है पौधा में भी बहुत बढियाँ लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है खिड़की है खिड़की से --

सजा सजा-उजा है और सारे सब यहाँ पे बैठे है खड़े है इंसान लोग बहुत सा --

ये कभी टूटने वाला नहीं है बहुत बढियाँ है बहुत अच्छा सोफे बनल है लड़की का विदाई में देने वाला दहेज़ में बहुत बढियाँ चीज़ है।

जो इतना अच्छा बना दिया इतना सुन्दर बना दिया इतना मस्त बना दिया मिस्त्री भी क्या ची --

यहाँ अच्छा लग रहा हैदेखने मे की मत पूछिए बहुत सुन्दर लग रहा है देखने मे देखने में भी क्या --